जिनका फेस ब्लर आ रहा है इसमें कुछ खिड़कियां भी दिख रहीं हैं जिनपर पिंक कलर के पर्दे लगे हुए हैं और अलमारीयो में कुछ सैलून का सामान भी इसमें शो में रखा हुआ है।

इसमें कुछ ग्रे कलर की कुर्सियां भी नजर आ रही है और कुर्सियों के पीछे कुछ प्लास्टिक के व्हाइट कलर के बैग भी इसमें नजर आ रहे हैं।

ये एक मिठाइयों की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें की तीन शो अलमारियां लगी हुई है।

इनके पीछे एक दीवार बनी हुई है जिस पे प्लस का निशान बना हुआ है।